ये एक लड़का है पेड़ के बीचों-बीच खड़ा हुआ है इस पेड़ के ऊपर पत्ते है नीचे इस पेड़ में कुछ नहीं है ये लड़का पेड़ के बीच मे खड़े होके फोटोशूट करवा रहा है छोटा-सा बच्चा है।

ये मंदिर है यहां पर गणपति की गुं ऊपर कुछ मूर्ति छोटी-छोटी सी बनी हुईं हैं मंदिर कुछ बहोत जादा कलरफुल दिख रहा है।